पानी है उसमें खोल में है यहाँ पे महिला सब इहवा पर पूजा कर रही हैं।

पुरे फील्ड है सब तरफ गाछ-वृक्ष पीछे सब तरफ गाछ-वृक्ष सब है।

पानी हय बीच-बीच में सब थोड़ा-थोड़ा मिट्टी सब है और --

यहाँ पे एक अच्छी-अच्छी सब्जी है और यहाँ पे फील्ड अच्छी है।